और स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स है कुछ टी शर्ट टंगी हुई है बहार में और अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं ।

यह लग रहा है कि यह एक हॉस्पिटल है और यह हॉस्पिटल का नाम यहां पर बहुत बड़े पोस्टर में लिखाव लिखा हुआ है।

और कुछ लोग भी है बहुत अच्छा भीयू रहा है।

और नदी के बीच में एक छोटी सी घर जैसी दिखाई दे रही है।

ह पैकेटिंग और हुम बहुत सारे डिब्बोयो मे रखी हुए है खाने कि चीज़े!